इसमें कई सरे खिड़कियाँ और दरवाजे --

लकड़ी का बना हुआ है।

तोफे रखे हुए है यहाँ पास में--

कई सारी पेड़-पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर।

यहाँ पर एक दीवाल उठी हुई है जिसमे ऊपर तार लगे हुए है।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

यह एक माकन है।

इसमें यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज करने की मशीने रखे हुई हैं यहाँ --

जो की नारंगी सफ़ेद और हरे रंग के है यहाँ कई --